इ लक्ष्मी लक्ष्मी पूजन हिन्दू धर्म में सभी कोई मनाते हैं |

इसमें सभी गाड़ी मोटरसाइकिल फोर व्हीलर जो पंप में आ के डीजल भरवाता है।

टोटो बोले ना आपको बाजार में टोटो की आवश्यकता अधिक हो रही है इसमें देखिए सिर्फ टोटो ही लगी हुई है और ये जो --

ये आप जो देख रहे हैं तालाब --

आप जो ई देख रहें हैं --

ये कोई शहर के बीच से निकली है जिसमें देखिये अनेक प्रकार के बहुत बड़े-बड़े घर है उसके बगल में ये झरना है।